यहाँ पे काफी सारे पुरुस्कार रखे हुए हैं और यहाँ पे मिक्की माउस बैलून वैगेरा सब

हेलो गाइस देख सकते हैं ये क्रिस्चियन है और ये बच्चा लोग को कुछ शिख बता रहे है की यहाँ पे भेजिएगा यहाँ पे यहा ऐसे पढ़ाई होते है देख सकते हैं ।

शिशो का पेड़ का काट का है देख सकते है बहुत ही लकड़ी का है बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को।

लाइट वगैरा दिया हुआ है और बच्चे आनद ले रहे है दीपावली का देख सकते है।

हेलो गाइस देख सकते हैं काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा | देख सभी रोड इधर सभी रोड इधर सभी रोड --

निकालने के लिए आया है और अपने बच्चे को लेते हुए आए हैं देख सकते है ।

हैल्लो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे हैं पानी भरा हुआ है देखे सकते है वहाँ पे भी बहुत --

जबरदस्त से लोग दिखाई दे रहा होगा आप सब को देख सकते है और बहुत ही आनंद के साथ यहाँ पे एन्जॉय कर रहा सब कोई देख सक --

आदमी यहाँ पे जिम कर रहा है और बहुत से लोग दिखाई दे रहे है देख सकते है।

और बहुत ही पानी गहरा है देख सकते हैं यहां का भी लुक जबरदस्त दिखाई दे रहा है।